जिसके बीच महाराणा प्रताप की एक स्टेचू बना हुआ है और इसके बगल में पेड़ पौधे और लाइट के खम्भे लगे हुए है।

यहाँ एक घर है जिसके आस पास बॉउंड्री है यहाँ एक रास्ता जा रहा है।

यह एक ग्रोसरी की दुकान है जहाँ एक तराजू रखा हुआ है और इस के पीछे विभिन्न प्रकार के आईटम रखे हुए हैं।

--और बहुत सी डब्बिया रखी हुई --

यह चिट्ठियों के आदान प्रदान के लिए एक डाक सुविधा है।

और वृक्ष के आसपास जालियां लगाई हुई है।

यह एक म्यूजियम की फोटो है।

एक बहुत लंबी नदी के ऊपर बना हुआ है।

यह एक ग्रोसरी की शॉप है जहाँ विभिन्न प्रकार के आइटम रखे हुए हैं।

यह एक ग्रोसरी की छोटी सी शॉप है।

जिस पर एक व्यक्ति डांस स्टेप में खड़ा हुआ है।

यह एक फार्महाउस है जिसका नाम सी टू पटना है और इसका गेट आधा लगा हुआ है।

यहाँ एक खेत है जिसके आस पास पेड़ पौधे लगे हुए है और यहाँ बहुत सारे व्यक्ति है और जिसके पास एक रास्ता गुजर रहा है।